और एक घर के ढ़लाई कर रहें हैं और पीछे की साइड में एक आदमी कर रहा है जय श्री राम।

यह इंडियन आयल नाम का एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे बहुत सारे लोग पेट्रोल डलवाने आते हैं।

और आ जैसे कि हमारे सामने एक ट्रैक्टर में आदमी अभी डीजल डला रहे है। और एक आदमी खड़ा है उसके बगल में।

जैसे की हमारे सामने यहाँ पे बहुत सुन्दर-सुन्दर बड़े-बड़े से घर हैं । बहुत ही अच्छे डिज़ाइनो में बनाए गए है ये घर ।

हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है और उसके बगल में बहुत सारे हरे-भरे पेड़ हैं।

और उसके आगे में बहुत सारे कच्चे मकान हैं। आसपास में बड़े-बड़े पेड़-पोधे हैं।

हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का कलर ऑरेंज और पीला कलर है।

और सरस्वती माँ का एक बड़ा सा फोटो है।